आगे में माता रानी के त्रिशूल दिखाई पड़ रहे हैं।

ऊपर में एक और लाइट लगाई गई है जो कि सफेद रंग की जल रही है।

इस दृश्य में झंडा की तैयारी की जा रही है।

उसपे नीले रंग से इंडिगो लिखा हुआ है।

ऊपर में बहोत सारे मोर पंख लगाए हुए हैं।

और उसकी चोंच भी पीले रंग की दिखाई पड़ रही है।

इस दृश्य में छोले के एक टब दिखाई पड़--

साइड में बहोत सारे कबर्ड में कपड़े वगैरा रखे हुए हैं।

दृश्य में ऊपर में बहुत सारे प्लास्टिक दिखाई पड़ रहे है जैसे सफेद नीला पीला लाल गुलाबी।

यह दृश्य दीवार पर की गई कलाकारी का है जिसमें बहोत सारी मु पिक्चर्स बनाई हुई है जो कि भूरे रंग की है।

एक औरत दिखाई पड़ रही है जिन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी है।

बहुत सारे खजूर के पेड़ दिखाई पड़ रहा है।

लोहे की रेलिंग लगाई हुई है।

आगे में दो व्यक्ति हैं जोकि कैमरा लेकर खड़े हैं।

दृश्य जिम का है।

का कलर काला है।

जो कि हरे रंग का है।

इस दृश्य में बहुत सारी दुकान दिखाई प--

इस दृश्य में कोचिंग दिखाई पड़ रहा है।

इसपे टारगेट डिफेंस क्लासेस लिखा हुआ है।

साइड में काले रंग का पाइप है।

की सफेद रंग से है।

आगे में एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई पड़--

मैदान में फुटबॉल दिखाई पड़ रहा--

इस दृश्य में सफेद रंग के कपबोर्ड दिखाई पड़ रहे--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

साइड में काले रंग से पिलर बनाए हुए हैं।

दीवार पर तीन तीन करके बैलून लगाया हुए है।

इस दृश्य में एक दुकान दिखाई पड़ रहा है।

स्कूटी लगाई हुई है जो कि काले रंग के हैं।

इस दृश्य में बहुत सारे टॉयलेट रखे हुए दिखाई--

ऊपर में बहोत सारे नाल झरना वगैरा लगाए हुए हैं।

यह दृश्य एक पंखा दुकान का है जहां पे बाहर बहोत सारे पंखा वगैरा रखे हुए हैं जो की सफेद रंग के साइड में एक कूलर रखा है वो भी सफेद रंग का है।

यह दृश्य जिम का है।

इसके आगे केशरी रोल लिखा हुआ है।

दृश्य एक ऑफिस का--

पे एक प्लक खोसा हुआ जो कि काले रंग का है।

अदरक धनिया रखी हुई हैं।

उसपे तीन रंग के बटन लगाइ हुई है।

चार पर्दे लगाए हुए हैं जो की लाल और क्रीम कलर के हैं।